नर्सरी के बाहर एक बैनर लगा हुआ--

इस फोटो में दो बच्चे फर्श पे बैठ के खेल रहे हैं और साथ में इसके बगल में एक स्लाइड झूला लगा हुआ है।

स्टेज में एक बहुत बड़ा सोफा लगाया है और साथ ही स्टेज का थीम व्हाइट और येलो है।

इस घर के एंट्री डोर पे बहुत सारे बैलून्स लगे गए हैं।

यह फोटो इस मेला के है। इस मेले में बहुत सारे लोग हैं। और साथ ही इस मेले में ब्रेक डांस लगा हुआ

इस ब्रेक डांस में बहुत लोग बैठे हुए हैं उसके बगल में एक टैडी बियर स्विंग है।

साइड में ही एक हेलीकॉप्टर राइड है इसके चारों तरफ बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है।

इस जिम के साइड में एक ब्राउन कलर का टेबल है और एक ब्लैक कलर की चेयर है।

ये फोटो एक मैरिज हॉल की है इस मैरिज हॉल के बाहर बहोत सारे लाइट्स लगे हुए--

बगल में एक बड़ी सी डलिया रखी हुई है।

यह फोटो एक इंस्टीट्यूट की है यह इंस्टीट्यूट के बाहर एक फ्लैग होस्टिंग स्टेज बनाया गया है इसके साइड साइड में कुछ बैनर लगाए गए--

इस इंस्टिट्यूट का कलर व्हाइट और पिंक कलर में है।

जिम के साइड वॉल पे एक मिरर लगाया गया--

यह फोटो एक कपड़े की दुकान की है इस कपड़े के दुकान में बहुत सारे साड़ियां और सूट्स लगे हुवे हैं जो रैक पे सजाए गए हैं।

इसकमे बहोत सारे बोरे रखे हुए है और साथ ही इस दुकान की छत लकड़ी की है।

दुकान के बगल में भी तो बैनर हैं।

इस मंदिरों के साइड साइड में बहुत सारे सामान रखे गए और मंदिर में टोटल चार खिड़कियां है।

साइड ही में एक रेड कलर की बोरा रखा हुआ है।

होटल के फर्श में पूरा पानी बिखरा हुआ है।

ये फोटो एक जंगल का है जंगल में एक छोटा सा बच्चा है जो पेड़ के ऊपर खड़ा है।

के साइड मे एक बडा सा मैदान है उस मैदान के चारो तरफ बहुत सारे पेड पौधे है और साथ ही बगल मे एक रोड है।

एक में एक फर्नीचर दुकान में एक इंसान बाहर की तरफ बैठा हुआ है।

दुकान के बहार एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है और साथ ही अंदर चार लोग पे है।